इस तस्वीर में जो फोटो है ये एक शॉप की है।

सफेद रंग की बाल्टी है जो की डस्टबिन लग रही है।

और कमरा सजा हुआ है व्हाइट बैलून लगे हैं।

इस तस्वीर में जो फोटो यह एक होटल या बार की है।

ये बहुत ही बड़ा है बहुत सारे टेबल चेयर लगे हुए ग्लास है बॉटल्स है।

वो ब्लेजर रखा हुआ है और मशीन्स रखे हुए--

बहोत सारे प्लास्टिक के डिब्बे रखे है जिसमें चॉकलेटस है और कुछ कुछ आइटमस रखे हुए है दुकान पूरा सजा हुआ है बहोत सारे शेल्फ बने है दुकान में जिसपे समान सजा हुआ है।

दो चार सोफे और बने हुए हैं बहोत ही सुन्दर दिख रहा--

जो कि बेहद सजा हुआ है बहोत सारी लाइटे लगी है रात का नजारा है।

पौधों की दुकान है नेचर केयर नाम लिखा है।

बहोत ही अच्छी जगह है सामने छोटा सा मुरम का मैदान है।

इस तस्वीर में जो फोटो है इसमें बहोत ही बड़ा मैदान है।

आस पास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं।

पीछे भी बहुत सारे घर है सफेद रंग के घर है बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं ये बिजली का खंभा भी है चारों तरफ हरा भरा हरियाली है।

बाजू से एक गली या रोड भी गई है बाजू में खेत है जहां बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

एक ने पिंक कलर की टॉप पहनी है एक ने व्हाइट कलर की टॉप पहनी है।

दरवाजा है भूरे रंग का एक आदमी सफेद रंग की शर्ट पहने हुए बैठा है।